और हमे यह पर एक आसमान बी दिखाई दे रहा है दिन का टाइम है वे यह पर बहुत बड़ी गड़िया बी खड़ी हुई है और ये उनकु टके हुये बी दिखाई दे रहे है।

बहुत बड़ी सी गाड़ी भी दिखाई दे रही है ग्रीन -ग्रीन उसमे ग्रीन -ग्रीन उसमे पत्ते भी दिखाई दे रहे है इंटर भी दिखाई दे रहा है।

एम् यहाँ पर हमे एक ब्लू कलर की बस दिखाई दे रही है एक ग्रीन कलर की पेड़ दिखाई दे रहा है रोड दिखाई दे रही है आसमान भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर का और बस बहुत ही सुन्दर सजी हुई है ब्लू कलर की उसमे--